स्वीर मे हमे एक गाय दिखाई दे रही है जो की काले व सफ़ेद रंग की है वह एक खूटे से बंधी हुई है जीसक जिस रस्सी का रंग हरा है उसके सामने हमे काफी सारा चारा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे हमे एक रेस्टॉरंट दिखाई दे रहा है जिसकी काँच की एक टेबल है उसके उपर हमे काफी सारे चार प्लेटे दिखाई दे रही है जिसमे खाया हुआ खाना नजर हा रहा है।

यह बचा हुआ खाना है व यहा पे हमे काफी गंदगी दे खने को मिल रही है।

हमे इसमे मोतीचूर के लड्डू बेसन के लड्डू आ नारियल बर्फी गुलाब जामुन रसगुल्ले ये सब मिटाई दिखाई दे रही --

सामनेवाले फ्लॅटफॉर्म पे हमे एक दूकान दिखाई दे रही है जहा पे काफी सारा खाने पीना का सामान दिख रहा है सामने तस्वीर में हमें फ्लॅटफॉर्म पे एक व्यक्ति व उसके अगल बगल तीन कुत्ते दिखाई दे रहे है।

इसने नीले रंग की साड़ी पहन रखी है व उसके उनके पास काफी सारा सामान है उनके बगल में उनका एक लड़का बैठा हुआ है जो कि छोटा है।

इस तस्वीर मे हमे एक लोहे का कारख़ाना दिखाई दे रहा है जहा पे हमे काफी सारे लोहे के खोखे टाइप के नजर आ रहे है।

तस्वीर मे हमे एक पीछे चर्च दिखाई दे रही है जहा पे गुलाबी लंग रंग की लाइट जलती हुई दिख रही है।

उसके नीचे पानी में हम काफी सारे व्यक्तियोको देख सखते है जो की घुटने जीतने गेहरे पानी में खड़े हुए है उन्होंने रंगबिरंग कपड़े पेहने हुए है व तस्वीर खिचवा रहे है।

पीछे एक व्यक्ति है जिसने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है वह उस बच्छे की बाल काटता हुआ दिखाई दे रहा है उसके एक हात मे कैंची है व दूसरे हात में काले रंग की कंगी है।

इस तस्वीर में हमे एक घर दिखाई दे रहा है जिसकी छत स्टीलसे बनी हुई है उसकी दीवार पर एक क्रॉस बनाया हुआ है।